के आगे ये घना जंगल है इसमें--

में दो व्यक्ति बैठा हुआ है और उसके बगल में दो बाइक है एक हीरो हुंदा है एक लेमर है जिसका नंबर थ्री --

स्कूल है उसके बगल में एक बड़ा सा टावर है जिसका हाइट पांच सौ फीट लग रहा है।

एक व्यक्ति बैठा हुआ है ये स्टूडेंट का सिम लग रहा है जहाँ पर एक व्यक्ति कोना बैठा हुआ--

उसके बगल में एक वाइस शॉट व्यक्ति है जो उसके हेल्प कर रहा है उसके मेरे जीम काफी लगा हुआ है।

यह मेडिसिन का दुकान दिखाया जा रहा है जहाँ एक ग्रिल बंद है एक खुला हुआ है ये बड़ा मेडिसिन में--

उसके बगल में एक दुकान है ये दवाई का दुकान है जिसका नाम श्री श्री राम --

डी_ए बी_ए पब्लिक स्कूल इसमें दस सारे बच्चे हैं जो अच्छे से बात करें और उसके बगल में इसका नंबर है थ्री वन टू वन --

ये एक झील का तो दिखाई दे रहा है जहाँ पर ढेर सारे घर रखे झील बहुत सुंदर है उसके बगल में.--

एक जंगल है ये शाम का मौसम में पहाड़ है के ऊपर से एक व्यक्ति--

काका का एक आम का जिसपर चार आम लगा हुआ है।

क्या मूर्ति डांस करके दिखा रहा है और मूर्ति में दो मूर्ति है जो बैठा हुआ है महाराजा के तरफ।

और एक चेरेइगा का छाप का आईना बनाया हुआ है और इसके बगल में दो तल्ला बिल्डिंग है वो वाइट कलर से किया हुआ है।

इसका पानथला बिल्डिंग है वो उसका चौड़ाई भी बहुत ज्यादा है इसके बाहर दस-बारह कार हैं।

और वह आंख में काजल लगा हुआ है एक व्यक्ति व्हाइट शर्ट ब्लैक पेंट पेहना हुआ है।